बहुत ही बढ़िया लग रहा है जो कि ये सभी इंस्टिट्यूट या संस्था के आगे होना चाहिए।

आप्त दिखाई दे रहा होगा वैसे इसमें गार्ड भी है।

जो कि बहुत ही काम --

इंस्टिट्यूट कॉलेज स्कूल की --

रंग बिरंगे ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया से लग रहे हैं।

दृश्य एक रेस्टोरेंट की दृश्य है।

अच्छी लाइटिंग की गई कि जो कि रात को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है।

जिसपे सेंट्रल किसान कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है।

की दृश्य है जो कि यह दृश्य किसी --

रात के समय का यह लिया गया द्रिश्य है और यह --

और यह प्रकटिक नजारा से भरपूर आंनदित --

कई कार्य के उद्देश्य को पूरा किया जाता है।

मोबाइल उपलब्ध हैं जो कि उन्होंने --